रबरे दिख रही हैं पेंसिल टंगी हुई है और पंखे लगे हुए हैं और ये काफी बड़ी सारी अलमारी है अलमारी में काफी सारी किताबें रखी हुई है वो कुछ टेबुल भी --

ये काफी बड़ा सारा घर है घर में बाहर लाल कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

गार्डन है यहाँ पर काफी सारी सिमेन्ट पड़ी हुई है रेत दिख रही है।

काफी सारे पत्थर दिख रहें हैं और निचे सीमेन्ट पड़ी हुई है कुछ सीढ़ियाँ हैं।